यहां एक बिल्डिंग दिख रही है जिसपे व्हाइट कलर पुता हुआ है दो गाड़िया दिख रही है एक कार दिख रही है।

फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं रोज़ मोबाइल दिखाई दे रहा है खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं टेबल दिखाई दे रहा है चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक तीन मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे रेड कलर पुता हुआ है ब्लू कलर भी पुता हुआ है लाइटस दिखाई दे रही है ।

इसपे आइ मेकअप जूड़ा और ब्राइडल मेकअप की कुछ तस्वीर लगी हुई है एक सोफा दिख रहा है टेबल दिख रही है जिसपे येल्लो कलर का --

सोफा दिख रहे है बेंच दिख रही है ग्रीन कलर की कर्टनस दिख रहे है खिड़कियां दिख रही है व्हाइट कलर की टॉवेल्स दिख रही है।

यहां पे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है पानी-पुरी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे गोल-गप्पे दिखाई दे रहे है पानी की बॉटल दिखाई दे रही है।

यहां पे फूलो की माला दिखाई दे रही है जिसमे मोगरे के फूल दिख रहे है गोल्डेन कलर के --

यहां पे एक बिल्डिंग दिख रही है इसपे व्हाइट कलर पुता हुआ है ग्रीन कलर भी पुता हुआ है आसमान दिख रहा है बिजली के तार दिख रहे है।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

इसपे ब्लू कलर पुता हुआ है एक जेंट्स दिख रहे हैं कार्पेट दिख रहा है ग्रीन कलर का स्लिपर्स दिख रही है लाइट्स दिख रही है ।